यहाँ बहुत सारे बैट रखे हुए हैं और उनके नीचे बॉल भी रखी हुई है अलग-अलग कलर की --

और बैट एक चीज मे फंसे हुए हैं और बैट के ऊपर स्टीकर भी चिपके हुए हैं।

यहाँ पर एक जन बैठा हुआ है और पीछे फव्वारा निकल रहा है।

यहाँ पर एक कमरा है और कमरे में दो लोग खले हुए हैं और गुब्बाले लगे हुए हैं।